पीछे बहोत सारे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक मिठाई की दुकान का दृश्य नजर आ रहा है।

बोर्ड पर एल_जी ब्रांड का लोगो लगा हुआ है।

दुकान के ऊपर ट्रक एवं बस ऑटो पार्ट्स के विक्रेता का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य नज़र आ रहा है।

और उसके बराबर में एक रिपेयरिंग का छोटा सा बोर्ड लगा है।

और उसके पास में ए_सी का एक्जास्ट लगा हुआ है।

कई सारे हरे रंग के पेड़ पौधे और जमीन पर घास नजर आ रही है।

आसमान में धूप की चमक नजर आ रही है।